इस तस्वीर मे एक कॉफ़ी का मग दिख रहा है जिसमें कॉफ़ी राखी हुई है।

ये नट बोल्ट्स रखे हुए हैं जो लोहे के उसमें काम आते हैं।

ये एक दुकान हैं जहाँ पे कुछ स्टील के बर्तन रखे हुए हैं एक महिला बैठी हुई हैं एक व्यक्ति बाहर खड़ा हुआ हैं साइड मे एक लोहे का दरवाजा हैं जिसमे नीले रंग की बॉर्डर हैं और पीले रंग की ज्वालिया हैं अंदर--

ये भगवान की मूर्ति है जो पुरे सोने से है इसका रंग सुनहरी है इसके नीचे तीन चार व्यक्ति बैठे हैं जो भग --

इसमें कई तरह के बच्चे है जो कलरफूल ड्रेसेस पहने हुए हैं निचे फ्लोर जो हैं वो वुड का हैं ।

ये एक बुक स्टोर हैं इसमे पूरी किताबे रखी हुई हैं और ये तीन व्यक्ति खड़े हुए हैं दो व्हाइट शर्ट मे हैं एक ब्लैक शर्ट मे हैं।

इसमें ब्लू कलर की पूरी सीट लगी हुई है एक सिस्टर खड़ी हुई है जो व्हाइट रंग का कोट पहनी है और एक व्यक्ति गुलाबी रंग के कपड़े पहने हुए हैं।

और उ गुलाबी रंग से हैंऔर ये सामने वाली बिल्डिंग पीले रंग से हैं इसमे बोर्ड लगे हुए हैं नीले और पीले रंग से--

तीन व्यक्ति खड़े हुए है उसमे एक महिला एक पुरुष और एक बच्चा है।

ये एक ग्राउंड एरिया है यहाँ पर दो व्यक्ति बैठे हुए है पीछे दो ऑटो है जो पीले रंग के है उसके पीछे पेड़ ही पेड़ हैं।